एक लेडीज जो है वो चल जा रही है मास्क लगा के।

इसमें एक बिल्डिंग है जिसका कलर ऑरेंज कलर का है।

यह योनो एस_बी_आई का और मशीन पर टोकन लगा हुआ है।

और पेड़ पौधे जो हैं वह बहुत दूर दूर तक लगे हुए हैं।

इसमें उनके रहने के लिए घर रखे हुए हैं।

में एक खिलौना आगे टंगा हुआ है जिसमें गोल गोल गोल गोल डिफरेंट कलर केर बॉल्स लगे हुए हैं।

ये कृष्णा ड्राई क्लीनर्स का उम्म बो बोर्ड लगा हुआ है जिसके साइड में एक ब्राउन कलर का गेट है।

यह सावरकर चौक मुल्लाजी की गली पारस होटल के पीछे कॉम्पलेक्स की दुकान है इसमें इसका एड्रेस लिखा हुआ है।

इस इमेज में अंदर एक मशीन लगी हुई है जनरेटर लगा हुआ है।

जिससे पेट्रोल जो है वो नीचे टंकी में भरा जा रहा है।

जिसमें कई प्रकार की साड़ी के बॉक्सेस रखें हुए हैं।

इसमें ये आस पास झाड़ी और जमीन जो है वो हरी है।

और कमरे का कलर व्हाइट है नीचे वाइट फर्श पड़ा हुआ है।

जहां पे मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक मशीन लगी हुई है।

इसमें एक ड्रॉ पूरी जिसमें कई बॉक्स बने हुए हैं।

शॉप के बाहर जो है वो रॉयल इंफीलिंड के समान रखा हुआ है।

ये इमेज किसी रेस्टोरेंट के बाहर की प्रतीत होती है।

इस इमेज में एक बुद्धा की अम प्रतिमा लगी हुई है।

इस इमेज में खिड़की एंड डोर पर कार्टंस लगे हुए है।

इस इमेज में कुछ केले लटक रहे हैं पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है इस इमेज में--

बहुत सारे लोग बैठे हैं टेबल पड़ी है बेंच पड़े हैं साइड में स्पीकर लगे हुए हैं।

एंड सामने दीवार में चर्च का जो जीसस का एक सिंबल होता है वो बना हुआ है।